लाइन में लगे हुए अंदर जाने के लिए कुछ लोग है आलरेडी से एंड कि-किसी एक ऑफिस के पास ये हमे दिखाई दे रहा है।

बैठे हैं खेल रहे हैं और अंदर हम देख सकते हैं मेंस पार्लर में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन कर रखा है।

बहुत ही अच्छे व्यू में एक मंदिर देखने मिल रहा जो की प्रोबेबली साउथ इंडियन डिजाइन का है एण्ड जो की जिस तरीके से पेड़ पौधे और पीछे की सीनरी देख के समझ में आ रहा है |

व्हाइट और ब्लू और ग्रीन कलर के बलून का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से गेट को सजाया गया है देन झालरे लटकाई गई हैं।

जो की दिख रहा है कोल्ड ड्रिंक के कान भी कैरेट रखे हुए है नॉर्मली चॉकलेट्स वगैरह भी दिख रही है यहाँं पर और घरेलू सामान भी अवेलेबल है।

एंड इसी बीच फोटो सेशंस में चले जा रहे हैं जिम की अ जिम में काफी सारे मशीन हम देख सकते हैं ट्रेडमिल जो है वेटलिफ्टिंग मशीने हैं और डंबलस वगैरह हम यहाँं पर देख पा रहे हैं।